एक बड़ा सा फील्ड है सूर्यास्त का टाइम है।

मंदिर के पीछे बहोत बड़ा सा पेड़ है कुछ लोग रोड पे है कुछ लोग दुकान के पास खड़े हुए हैं कुछ दुकानें दिख रही है।

ये बहुत सारे घर हैं घर के सामने में कुछ कुछ लोग--

और दो-तीन पेड़ भी हैं उसके बाद एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे हैं बच्चे।

यहां एक प्लैटफ़ॉर्म है प्लैटफ़ॉर्म के सामने एक--